हमें यहां पर सामने एके दिवाल सी खड़ी गेट सा लगा हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर अरबन प्राइमरी हेल्थ --

काफी सारी डेकोरेशन भी की गई है कुछ कार्टूंस वगैरा भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां पर एस_बी_आई ए_टी_एम का बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें सामने मार्केट दिखाई दे रहा है मार्केट में काफी सारी दुकाने वगैरा भी दिखाइए दे दिखाई दे रही है।

काफी सारे व्यक्ति काफी सारे व्यक्ति इधर से उधर आते हुए नजर आ रहे--